यह एक पैलेस की तस्वीर है।

इस तस्वीर में आप--

को तस्वीर में दिखाई--

आदमी वे औरते दोनों काम कर रही हैं।

दो कपल्स पहाड़ों के बीच में--

हैं एक लड़की बैठी हुई--

दे रही हैं।

ब्लर किया गया है।

इस तस्वीर मे आपको कुर्सियां नजर आ--

लक्ष्मी होटल एंड रेस्टोरेंट की--

राव अंबेडकर जी की फोटो ल--

बढ़िया स्रोत है वजन घटाने का।

इस तस्वीर में आप--

है प्लेट में हरी सो--